और कुर्सी रखी हुई है और हरा पेड़ पौधा भी है।

मैदान भी दिख रहे है और हरे भरे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे है कुछ लोग खड़े हुए है।

उन बड़ा सा नहर है अ और कुछ मेदाने हैजो हरे भरे घास है और हरे भरे पेड़ पौधे भी है।